एक बच्ची ली हुई है ये बहुत सुन्दर दिखाई दे रहा है ।

गोद में ली हो उसका बर्थडे मनाया जा रहा है ये बोहोत सुन्दर दिखाई दे रहा है।

इ खेती-बाड़ी की तरह दिखाई दे रहा है।

और यहाँ देख सकते हैं चेयर है कुछ लोग खड़े हैं ।

यहाँ पर अभी कोई नहीं है।

दो मंजिला दिखाई दे रहा है सीढ़ी भी दिखाई दे रहा है ।

जिम है। जिम में लोग बॉडी फिट करने है।